पेड़-पोधै भी लगे हुए है।

पीछे कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं।

और यहां बहुत सारी लाइट्स भी--

ये सारा समान गाड़ियों का हैं दीवार पर फोटो लगी हैं और लाइट जगी हैं।

सामने एक बड़ा सा शोरूम हैं बाहर शार्ड फोर्स लिखा हुआ है--

बहोत सुंदर लाइट्स लगाई गई हैं बाहर जनरेटर लगा हुआ हैं और यहां--

बहुत सारी लाइट्स जगाई गई हैं।

सामने शीशे के दरवाजे पर सैमसंग लिखा है।

सामने दो ए_सी लगे हुए हैं।